इन पत्थरों पे एक पेड़ भी लगा हुआ है हुआ है।

गाँव में ऐसा बना हुआ है।

यहाँ पर अलग-अलग तरह की लाइट लगाई गयी है।

जाली के पीछे कुछ पौधे भी --

झोंपड़े के पीछे एक मकान भी बना हुआ है लाल रंग का।

यहाँ पर आइट साइड में कुछ पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

इस ताला यहाँ तालाब में पूरे में पानी भरा हुआ है।

दो आंटियां खड़ी हुई हैं और बाकी के लोग बैठे हुए हैं।

लोग गेट के पास भी खड़े हुए हैं।

यहा पे से बहोत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है।

इन्होंने लाल कलर की शर्ट टी-शर्ट एंड व्हाइट कलर का पैंट पहन रखा है।

यहा पर कुछ लोग भी खड़े हुए है।

कार के आगे भी एक कार खड़ी हुई है ब्लैक कलर की।

यहाँ पर ए साइड में एक खंभा भी है।

जो कि व्हाइट कलर का है।